यहां पे एक रूम हैं।

और वॉल का पीछे में एक बिल्डिंग है।

और एक डब्बा भी दिखाई दे रहा है।

और प्लेट का अंदर में दो चम्मच है।

और उसका पीछे में दो घर दिखाई दे रहा है।

और पपाया दिखाई दे रहा है।

और एक फैन भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में लोहा भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

ये रूम में दो टेबल है।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

और बहुत सारा कप्स भी दिखाई दे रहा है।